काउंटर के पास एक कुर्सी तथा काउंटर पे एक कैलकुलेटर रखा हुआ है।

रेस्टोरेंट के सीलिंग पे सफेद रंग की एल_इ_डी लाइट लगी हुई है तथा अन्य लाइटें भी लगी हुई है।

नदी के पानी के साथ साथ कई सारे पहाड़ और चट्टान भी मौजूद हैं।

तस्वीर में बाईं और दूर एक व्यक्ति भी अपने कुत्ते के साथ बैठा हुआ है।

आस पास की पूरी इमारत नारंगी रंग की है।

इमारत के सामने कुछ पेड़ पौधे भी मौजूद हैं।

सामने एक नीले रंग की कुर्ती में एक महिला खड़े है।

यह एक उद्यान का दृश्य है।

महिलाएं भारत के पारंपरिक भरतनाट्यम दृश्य नृत्य को कर रही है।

फर्श पे हरे रंग की कारपेट लगाई हुई है।

यह एक बैग लेमिनेशन वगैरा की दुकान का दृश्य है।

में मौजूद जमीन मिट्टी की है।

पक्षी का रंग काला नीला है तथा पूछ सफेद रंग की है।

पंडाल की चौड़ाई काफी छोटी है।

तस्वीर में मौजूद सफेद रंग के बोरो में कई सारे गुलाब अड़हुल और गेंदे के फूल मौजूद हैं।

यह एक स्कूल के बाहर का दृश्य है।

ये स्कूल की बाउंड्री के बोर्ड पे न्यू विजन पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है।

स्कूल के बगल में एक और इमारत है।

यह एक बैंक के अंदर का दृश्य है।

यह किसी शादी समारोह के पार्टी का दृश्य है।

छत की खिड़कियाँ शीशे की हैं।

यह एक शादी समारोह का दृश्य है।

यह एक बच्चों के कपड़ों के दुकान के अंदर का दृश्य है।

यह एक दवाई दुकान के बाहर का दृश्य है।

स्टील के सामानों के साथ साथ दुकान के बाहर सील पैक डब्बे में कुछ मिक्सी तथा कुकर रखें है।

दुकान में मौजूद गहरे नीले रंग की कई तीन कुर्सियां लगी हुई है।

जिसमें कई सारे कंप्यूटर के अलग अलग कोर्सेज उपलब्ध है।

तस्वीर में कई सारे बिस्तर रखे हुए हैं।

एक व्यक्ति पेड़ के पास एक कुर्सी को सहारा दिए खड़े हैं।

तस्वीर के सामने रोड पे एक मोटर साइकिल भी खड़े है।

रेस्टोरेंट काफी शांत और साफ सुथरा है।

यह एक किताब दुकान का दृश्य है।

दुकान के रैक पे अनगिनत किताबें वह पेन पेंसिल भी मौजूद है।

यह किसी दुकान के गोडाउन का दृश्य है।

गोडाउन की छत करकट वह लोहे के ढांचे से बनी हुई है छज्जा भी लोहे का है।